दो स्कूटी खड़ी हुई है एक स्कूटी का कलर ब्लैक है और दूसरी स्कूटी का कलर व्हाइट है यहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं पेड़ के नीचे एक कुर्सी रखी हुई है ।

यह एक जिम की तस्वीर है जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी बॉडी दिखाते हुए फोटो ले रहा है और नीचे एक बड़ी --

जिम की तस्वीर है जहा पर एक व्यक्ति चड्डा पेहने हुआ नजर आ रहा है बॉडी दिखा रहा है और यहाँ पर काफी सारी जिम की मशीन रखी हुई है और लाल कलर की यहाँ कुर्सी रखी है।

और यहा बोटल और पाउडर और ये काफी सारे फेस वॉश रखे है चार्जर रखा है।